कोचिंग सेण्टर यहां पे है एसी लगे हुए है यहाँ पे पंखा लगे हुए है यहाँ पे एसी है यहाँ पे दो एसी लगे हुए है। और ढेर सारा बेंच --

यहाँ पर एक फील्ड है यहाँ पर एक मशीन भी लगे हुए हैं अगल-बगल में ढ़ेर सारे पेड़ भी लगे हुए हैं एक लाइन से यहाँ पर एक ब फील्ड है यहाँ पर एक मशीन भी है और यहाँ पर अगल-बगल पेड़ भी लगे हुए है लाइन से और एक यहाँ बड़े पेड़ भी है इसमें ए --

यहाँ पर एक घर बना हुआ है| वो दो तल्ला का घर है| यहाँ पर दो -तीन बोर्ड भी लगे हुए हैं| यहाँ पर दो-तीन दुकाने हैं।